यह एक किले का गेट है इसके बाहर बैठने के लिए चेयर्स रखी हुई है।

बगल में एक पोस्टर लिखा हुआ है जिस पे दिशा निर्देश लिखे हुए है व् आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे बॉउंड्री के अंदर लगे हुए है।

यह एक बहुत ही पुराना टेंपल है जिसके परिशर में चेयर रखी हुई है जिनके उपर व्यक्ति बैठे हुए है।

वह उसने अपने सर पर गमछा पहना हुआ है निचे एक पेड़ है वह ऊंट पानी पि रहा है।

यह एक उधान है जिसके अंदर एक झोपडी बनी हुई है।

यह एक स्विमीपुल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है पानी बहुत ही साफ़ व् स्वच्छ है और इसके किनारें पर बच्चों के खेलने के लिए पिस्सी पट्टी या बनाई गयी है तथा बगल में एक ड्रेसर रूम है।